सैलून के अंदर ये इंसान बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान के ऊपर ऐसे एफ सोनीक लिखा हुआ है दाहिने तरफ एस एन ट्रेडर्स लिखा गया है।

नीचे दुकान का रंग हरा है बहुत सारा कलर का डब्बा दिखाई दे रहा है।

दो फ्लोर का बिल्डिंग है तस्वीर के तरफ एक दरवाजा भी है दरवाजा खुला हुआ है।

तस्वीर के बाएं तरफ नीचे एक छोटी लड़की हैं जिसने एक लड़की को बुका हुआ है।

सामने और एक लड़का खड़ा है।

कमरे के अंदर सोफा भी है और टेबल भी सामने टेबल पर शीशा भी लगा हुआ है।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

दीवार के दाहिने तरफ एक छोटा सा आईना लगाया गया है दीवार के बहीने तरफ खिड़की भी हैं खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर का आधा--

बिल्डिंग के बाहर बाइने तरफ स्कूटी और बाइक भी रखे हुए है।

बिल्डिंग पर लिनोओ लिखा गया है उपर लाल रंग से है हरा पेड़ भी दिखाई दे रहा--

इसका रंग नीला है पोस्टर पर सफेद रंग से फोर फिफ्टीन लॉन्च बार रेस्टोरेंट लिखा गया है जिस पर लाइट्स भी है।

सच में मुझे एल्बम दिखाई दे रहा है। बरांडा जैसा है । रूम का ऊपर कर रहा हूं पीला है और नीचे कर रहा हूं पिता लाल का है।

ये ऊपर में सफेद रंग का बोर्ड है जिस पर आई टेक लिखा गया है।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

जिस पर डिजाइन भी लगा हुआ है बैठे औरत को एक बच्चा कुछ दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

सामने मैदान के बाईंने तरफ टेबल और चेयर भी रखा गया है।

कमरे का रंग सफेद है और गोल्डन कलर भी है।

इंसानों के बाएं तरफ एक गूमती भी है।

सामने बहुत सारा सामान रखा हुआ है बाइने तरफ बाहर एक सफेद रंग का गाड़ी दिखाई दे रहा है।

गाड़ी के बाहर उस पार भी बिल्डिंग है जिसके बाहर पोस्टर पर ओप्पो लिखा हुआ है।

होटल का रंग हल्का नीला है और लाल भी है।

बरंदा के बाहर भी कारपेट रखा गया है।

ऊपर वायर्श भी लटकाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

रास्ते के दाहिने तरफ एक सफेद रंग का गाड़ी रखा हुआ है जिसके सामने दो बाइक भी है।

स्टैचू का रंग गोल्डेन है। घर का ऊपर का रंग भी गोल्डेन से बनाया हुआ है। घर का रंग दीवार का सफेद है।

कमरे का ऊपर पंखा लटकाया गया है नीचे दो इंसान बैठे हुए हैं।